जिस पर एक आदमी और कुछ सामान उतरा होया है और नीचे के एक बाइक खड़ी हुई है और साइड में एक आदमी बाइक पर जा रहा है।

यह एक बोहोत बड़ी कॉसमैस्टीम की दुकान है। इसमें एक आदमी खड़ा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा विद्यालय है।

यह एक बहुत बड़ा पहाड़ है।

पहाड़ के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है।

यह एक महिला डॉक्टर है इस डॉक्टर ने एक बच्ची को पकड़ कर रखा हुआ है।

उस खिड़की पर सूरज की रोशनी आ रही है और ऊपर छत में एक पंखा भी लगा हुआ है।

और साइड में एक लकड़ी का काउंटर रखा हुआ है।

और एक लोहे का गेट बड़ा सा लगा हुआ है और ऊपर एक लाइट जल रही है।

और एक लड़का फोटो खेंच रहा है।

और शीशे कलर का गेट लगा हुआ है।

यह एक स्कूल की क्लास है इस क्लास में बहुत से बच्चे मेज पर बैठकर कुछ चित्र उतार रहे हैं।

और एक दो गेट भी है और पास में एक खिड़की भी है।

और इसमें बहुत सुंदर टेंट लगा रखा है।